यह हैं मॉल के उस सेक्शन की तस्वीर जहाँ पर औरतों के कपड़े दिख रहे हैं यहाँ पर हम औरतों के खूब सारे कुर्ते और सामने ही लड़कियों के लिए कुछ टॉप्स भी देख सकते हैं जो कि शा हेंगर पर टंगे हुए हैं।

यह तो किसी शानदार से रेस्टोरेंट के अंदर टेबल पर रखी हुई एक खान की प्लेट की तस्वीर लगती है जिसमें एक शानदार सा स्वादिष्ट का लच्छा पराठा रखा हुआ है जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए।

देखने में ही कितना शांत माहौल लग रहा है कितनी सारी किताबें और कितनी सारी नीले रंग की कुर्सियां इस तस्वीर में नजर आ रही हैं यह जरूर कोई लाइब्रेरी का दृश है।

एक केक का रंग पीला है जिस पर गुलाबी और बैंगनी फूल है दूसरे कलर का है जिस पर सफेद सफेद है फूल है और लाल लाल चेरी .

किसी एम्यूजमेंट पार्क की फोटो है ऐसा प्रतीत होता है यहां हम कई तरह के रंग-बिरंगे से झूले देख सकते हैं जिनका रंग नीला संतरी हरा और लाल हैं।

और इस तस्वीर में हम पानी के उधर एक दीवार भी देख सकते हैं जिस पर हरी-हरी काई लगी हुई है।

यह कोई क्रिकेट ग्राउंड की तस्वीर लगती है जहाँ पर चौक से कुछ निशान बनाए गए हैं। हरी-हरी सी छोटी-छोटी सी घांस है।

कितना खूबसूरत दृश्य है प्रकृति तो ईश्वर की अनुपम कृति है।

गाजर गोभी आलू लहसन और पीछे शायद प्याज भी और दीवार के पास --